लोहे का भी कुछ बना हुआ है।

पानी के ऊपर में कुछ छोटे छोटे पत्तल है।

गाय के बगल में एक कुत्ता भी खड़ा है।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

यहां पर बहुत बड़े मंदिर दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग के बगल में भी कुछ छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक घर जैसा दिखाई दे रहा है जो पीले कलर का है जिसके ऊपर में अल्बेस्टर भी है।

उसके पीछे ब्लू कलर का डेकोरेट किया गया है।

यहां पे पटरी दिखाई दे रही है पटरी पे एक माल गाड़ी खड़ी है।

दीवाल के उस साइड अल्बेस्टर का एक छोटा छोटा घर भी बनाया है।

इधर साइड में एक लोहे का कुछ दिखाई दे रहा है।

फील्ड पूरा हरा भरा दिखाई दे रहा है कही कही छोटे छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे है।

दुकान के आगे एक साइकिल और एक स्कूटी खड़ी है।

दुकान के अंदर भी दो आदमी दिखाई दे रहे हैं और अंदर में बहुत सारे बड़े बड़े टी_वी दिखाई दे रहे है जिसके ऊपर में सोनी लिखा हुआ है।

लैपटॉप के नीचे बहुत सारे कार्टून रखे हैं।

यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है।

उसकी बगल में बहुत सारे रंग बिरंगे फूल और उसके पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यह एक फल का दुकान है।

यहां पे बहोत सारे रंग बिरंगे फल है।

उसके बहुत पीछे भी दो औरत बैठी हुई है और इधर भी बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं।

स्टेज के आगे में पंडित जी खड़े हैं और स्टेज के स्टेज पे बहोत सारी पूजा की सामग्री रखी हुई है।

जैसे एक साइड सीरियल में कुछ छोटे छोटे बोतल जैसे भी मैगी का पैकेट भी दिखा हुआ है।